बहोत ही मस्त दिखाई दे रहा होगा आप लोगों आप लोगो को और बहोत ही यहाँ पे एल_सी_डी वगेरा लगा हुआ है इधर-उधर देख सकते है बहुत ही हरा-भरा सीन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ।

हेलो गाइस देख सकते है यहाँ पे काफी सारे घर-वगेरा हैं और यहाँ पे

हैल्लो गायज देख सकते है ये काफी बड़ा पेट्रोल पंप है और बहुत ही मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आपलोगों को और बहोत ही जबरदस्त देख सकते है चारों साइड में--